ये एक जिम है जहां पे लोग आते हैं अपने तन को स्वस्थ करने के लिए।

एक दो सफेद रंग की टी शर्ट खड़े हुए हैं।

हरे रंग के इतने सारे घास है।

ये ऐसी जगह है जहां पुराने लोग मानते हैं कि हमारी मन्नत पूरी होगी बड़े बड़े जार है हरा भरा।

और ये एक राउंड शेप में बना हुआ--

सफेद रंग की गाड़ी दिखाई दे रही है एक लाल रंग का छोटा सा एक ट टब है।

और एक लड़का खड़ा है।

ये एक कार है जहां पे एक लड़का उसको सफाई कर रहा है काले रंग की कार है।

आजू बाजू इतने सारी गाड़ियां खड़ी है।

एक लड़का और एक लड़की रिक्से पे जा रहे हैं।

और एक बरा रोड के ऊपर है जहा पे मट्टी है आजू बाजू।

ये एक दवाई खाने की जगह है जहां लोग आते हैं जब बीमार पड़ते है तो लोग आते हैं।

यहां पे एक सफेद रंग की गाड़ी खड़ी हुई है।

यहां पे इतनी सारी कुर्सियां है जो अच्छे से सजाई हुई है।

और बर व्हाइट मार्बल का नीचे है ऊपर भी लगा हुआ है।

पाइप के आकार की तरह कुछ लगा हुआ है इतने सारे लाइट्स भी है यहां पे।

जहां पे लोग सारी देखने के लिए आते हैं।

और खसारी खोल खोल के दिखा रहे हैं बनारस की साड़ी है।

ये एक ऐसी दुकान है जहां लोग जाते हैं जाने के बाद कपड़े खरीदते हैं।

नीले रंग का एक बड़ा सा सूट है।

पीला लाल रंग का एक सूट है यहां पे एक पीले रंग का सूट है।

व्हाइट मार्बल का होता है।

दो कार है एक लाल रंग की है एक सफेद रंग की है।

ये एक सब्जी मंडी की दुकान है।

इतने सारे ये क्यूब्स रखे हुए हैं।

जहां पे लोग आते हैं।

यहां पे हर चीज की कुछ भी प्रोडक्ट चाहिए तो यहां पे मिल जाता है।

ये एक मंदिर है जहां पे गणेश जी की फोटो है सरस्वती की फोटो है।

ये एक नीले रंग का खंभा है।

ये एक सब्जी मार्केट है जहां पर मिर्ची मिलती है लाल रंग की पि लाल रंग की हरे रंग--

आज सब अ अ मोटे में रखे हुए है।

यह एक संतोष हॉस्पिटल है जहां पे कांच की बिल्डिंग है।

हरे हरे घास ये बड़े बड़े घास है।

और दो कार ऊपर है और खुला हुआ है एक लाल रंग की कार है।